ये एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है यहां फर्नीचर का बहुत सारा सामान है ड्रेसिंग टेबल है डाइनिंग टेबल है बल्ब है पंखा है।

यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है उसके नीचे बहोत सारा समान है रखल स्विच सा भी लगा हुआ है।

और उधर टेबल लगा हुआ है बहोत सारे उसके बाद चेयर लगा हुआ है एक जेंट्स खड़ा है।

पेड़ लगे हुए हैं जो की बहुत हरा भरा है।

यह एक दुकान है इसमें टेबल रखा हुआ है चेयर रखा हुआ है बहुत सारा सामान है घड़ी टंगा हुआ है बल्ब है।

यहां एक दुकान है इसमें बहुत सारे किराने आइटम रखे हुए हैं जिसमें आटा है सरफ है।

यह एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है कूलर है बहुत सारे विद्यार्थी बैठा हुआ है चेयर लगा हुआ है पर्दा टांगा हुआ है।

यहां बहुत सारे कार्टून रखा हुआ है बगल में बाइक खड़ा है कारपेट बिछा हुआ है गेट है।